चाइनीज सेंटर गोल चाइनीज सेंटर लिखा हुआ है।

ब साइड-साइड बड़ा-बड़ा पौधा-पेड़ ये सभी चीजे दिखाई दे रही है।

और ब हरे -हरे पेड़ फूलो का यह पेड़ पीछे और बीच में काले कलर की एक मूर्ति लेटी हुई नजर आ रही है |

ऊपर इ_सी_इ और ट्रिपल इ का एक पोस्टर लगा हुआ है एक छोटा सा --

पेड़ -पौधे भी दिखाई दे रहे है हरे कलर में--